क्यूब स्टॉप लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां हमें दो बस दिख रही है।

यहां सीमेंट और रेत दोनों भी दिख रहे हैं।

एक क्लास लग रही है या--